कई झने व्यक्ति लोग लिखे ट्रेक्टर के पीछे-पीछे जा रहें है।

नज़र आ रहा है और इसके चारों तरफ--

एक झने लड़का बैठा हुआ है और पानी पूरा नीला-नीला दिखाई दे रहा है।

और इसके आजु-बाजु में --

और इस एक ठो कटोरी में ये चटनी रखा गया है।

और इसके चारों तरफ हरे भरे पड़े -पौधे नज़र आ रहे हैं।